यहाँ एक बैंक है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए है बाहर एक वॉचमैन खड़ा है और यहां पर दो तीन लोग खड़े हुए हेेंगे